सामने देखा जाए तो बहोत सारे कप रखे हुए हैं अलग-अलग शेप के।

और भी सुंदर बना रहे इस रेस्ट हाउस को--

ये कोई गड्ढा है नदी नहीं कह सकते इसको।

और यहां बहुत सारे पेड़ पौधे तथा एक नदी बह रही है।

एक व्यक्ति खड़ा है जो कि गुब्बारे लिए खड़ा है बेचने के लिए।

तथा केबिन बहुत अच्छा दृश्य प्रदान कर रहा है।